इस तस्वीर में मुझे सड़क दिखाई दे रही है सामने मुझे कुछ ऑटो दिखाई दे रहे हैं और गाड़ियां दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे एक कुर्सी दिखाई दे रही है उस कुर्सी के पीछे कुछ फ्रीजर जैसे दिखाई दे रहे हैं।

कुछ लाइटें दिखाई दे रही हैं मुझे ये कोई लाइब्रेरी लग रही है दीवार पे एक ए_सी दिखाई दे रही है कुछ पंखे दिखाई दे रहे हैं।

और कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं कपड़े टंगे हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे ये कोई।

इस तस्वीर में मुझे एक लड़का दिखाई दे रहा है जो कोई नाव पे तस्वीर ले रहा है पास में पानी दिखाई दे रहा है।

और दुकान दिखाई दे रही है जिसका गेट है वो आधा बंद है गेट है जो लोहे का बना हुआ है कुछ बाल्टी जैसे दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर में मुझे सामने एक हॉस्पिटल जैसा दिखाई दे रहा है जिसके आगे कुछ व्यक्ति भी दिखाई दे रहे --

कोई मस्जिद दिखाई दे रही है जिसके बाहर की साइड मुझे दो व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं।

कोई मकान दिखाई दे रहा है जिसका लोहे का गेट भी दिखाई दे रहा है और इसके अंदर मुझे कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

स्टेशन लग रहा है पास में एक ट्रेन दिखाई दे रही है और पास में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

मुझे कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है जो कोई स्टील कि बनी कुर्सी पे है।

इस तस्वीर में मुझे सामने एक--

इस तस्वीर में मुझे कुछ तोते दिखाई दे रहे हैं जो कोई पिंजरे के अंदर है।

इसके आगे एक स्कूटी दिखाई दे रही है पास में पिपल का पेड़ दिखाई दे रहा है।